मोड़ पर ही कुछ लोहे का कुछ सामान रखा हुआ है और बड़ा सा खंभा भी लगा हुआ है।

ये टायर्स बाहर है और आसपास भी कोई भी नहीं दिखाई दे रहे--

दो साइकिले भी है और घर के ऊपर ही चार ऐ_सी लगे हुए हैं।

रेस का कंपीटिशन हो रहा है जहां पर दो लड़कियां और दो लड़के हैं।

इसका पेंट पीले रंग का है और कुछ पट्टियां है ब्राउन कलर की।

जिसमें काफी तरह के अलग अलग रंग बिरंगे दवाइयां रखी हुई है और सामने टेबल है सफेद रंग की।

काफी पेड़ पौधे भी हैं और जमीन पे थोड़ी थोड़ी घास है और मिट्टी है।

और बोर्ड के नीचे ही नंबर भी लिखा हुआ है।

पंखड़ियों का रंग ग्रे है और ऐसी ही बहोत सी पंखड़ियों यहां पर रखी हुई हैं।

पंखुड़ियों के पीछे कुछ मोटरसाइकिल जैसी खड़ी हुई है।

जहां पर दीवार पर तिरंगे के रंग के गुब्भारें लगे हुए हैं ऑरेंज और फिर व्हाइट फिर ग्रीन ।

दीवारों के ऊपर की छतो पर छोटे छोटे झूमर लगे हुए हैं और कुछ लाइटे लगी हुई है।

कुछ आदमी लैपटॉप पर काम कर रहे हैं उनके सामने लैपटॉप्स रखे हुए हैं पंखे बंद है।

पोस्टर पर अलग अलग कंपनियों के नाम लिखे हुए हैं जैसे कुछ फोन की हैं तो कुछ डिश की--

अलमारी के पीछे एक अलमारी है जिसका रंग हरा और गुलाबी है।